बहुत सारे लोग जूते हुए है ये लोग मोमबत्ती जलाकर केक काट रहे है बहुत अच्छी सजावट भी की है ।

यहाँ एक लड़की अपने फिटनेस के लिए डेली कसरत करती है।

यह एक दुकान है। यह दुकान बहुत ही बड़े है। यह बहुत तरह के सामान मिलते है। इस दुकान को बहुत अच्छे ढंग से सजाये भी है।

विदेश को जाने के लिए आते हैं।

यह कोई लोकल मैकेनिक है जो बहुत अच्छे काम करते हैं।